यहाँ निचे की तरफ एक ज़मीन है और वहाँ पे बहुत सारा पानी भी है उस ज़मीन पर एक मगर भी आया हुआ है उस नदी में बहोत सारा पानी--

यह एक दुकान है यह एक मोबाईल शोपी है इस मोबाईल शोपी मे बोहोत सारे मोबाईल फोन के डब्बे रखे हुए है।

कुछ सफेद है कुछ लाल है तो कुछ पीले भी है सामने की ओर बोहोत सारे टोकरियाँ भी रखी हुई हैं।

यहाँ पे नीचे की ओर जमीन है और जमीन पर घास भी उगी हुई है सामने एक बडा ऐरोप्लेन है।